सबने एक जैसे कपड़े पेहने हैं जो लाल रंग के हैं।

कुछ बच्चे पीछे भी खड़े--

एक तरफ पानी की बॉटल रखी हुई है।

बहुत सारी शर्टे टंगी हुई है वह आड़ी लगी हुई है।

जहां सब तरह की टिकट बुक होती है।

यह एक ए_टी_एम मशीन है।

यहां एक किचन है जो नया है।

दूसरा आदमी उसको देख रहा है।

दूसरा आदमी भी साइड में बैठा है वह बाइक पर कुछ बना रहा है।

यहां एक कमरा है कमरे में दो आदमी बैठे हैं।

बीच वाली बच्ची ने सफेद रंग का टॉप पहना है।